यहां पर बहोत सारे स्टूडेंट है जो अपना काम कर रहे है प्रैक्टिकल्स कर रहे है अलग-अलग यहां पर क्राफ्ट्स बना रहे है।

और यहां पे सबको अपना भाषण सुनाए जा रही है।